पास ही एक दीवार पर लिखा हुआ है तथा आस पास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ व माउंटेन है।

यह एक किला है जिसके अंदर एक पानी का बना हुआ है।

यह एक किला है जिसका गेट है गेट पर दो एलिफेन्ट का स्टैचू बने हुए --

लाइटे लगी हुई है जिनका प्रतिबिंब स्विमिंग पुल में दिखाई दे रहा है।

इस स्त्रोत के आस-पास बहुत गंदगी घास पूस झाडिया उगी हुई है तथा किले के अंदर घास उगी हुई है।

बगल में स्विमिंग पूल है तथा आस-पास माउंटेन के ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए है आसमान में बादल छाए हुए है।

तथा सीढिया बनी हुई है आस-पास बालकनी बनाई गयी है।

साइड में टू वन जीरो लिखा है व इसका कलर ग्रीन है आस-पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

आस पास दिवारे बनी हैं।